यहां पर कॉफ़ी की मशीन भी रखी हुई है।

शीशे रखे हुए हैं सेफ रखी हुई है।

और यहां ऊपर पंखे भी लगे हुएं।

चित्र में हमें यहां पर एक पेड़ दिख रहा है।

और यहां पर रिक्शा भी खड़ी हुई है।

और ऊपर पुल पे भी यहां पर बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

और यहाँ पर पत्थर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है।

और गेट भी लगा हुआ है।

चित्र में हमें यहां पर बहोत सारे पहाड़ दिख रहे हैं।

और यहां पर लाइटें भी लगी हुई हैं।

और स्टूल भी रखा हुआ है।

इस चित्र में हमें यहां पर एक हॉस्पिटल दिख रहा है।

और पीछे यहां पर पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

और यहा पर दो ब हाथ में तिरंगा ले रहे हैं।

और यहां दो आदमी भी दिख रहे हैं और स्टूल भी रखा हुआ है।

इसमें हमें यहां पर एक मंदिर दिख रहा है।